मोटा सा पाइप ह। एजे से तेल भराला लिखल ह पाइप झंडा लगल ह। मोटर ईस्पोर्ट्स लिखल ह।

ये एक रेस्टोरेंट ह। रेस्टोरेंट में बेड लगल ह। सफ़ेद रंग का चदरा ह। लाल रंग का कम्बल ह। सफ़ेद रंग का बेडशीट ह।

बीच-बीच में पेड़ ह। एक खे झोपङी लगल ह मड़ई ह। एक खे धनवा में कुछो खङा कके डन्डा टाईप क में कपड़ा पहीनावल ह लकड़ी प।

ओ गच ओकरा साथे चटनी ह देखी जग ह जगवा में पानी ह।